इस फोटो में हमे काफी सारे विंडोज दिखाई दे रहे है जिसमे हमेकाफी सारे रूम देखनेको मिल रही हैं नीचे मार्बल पत्थर देखने को मिल रहा है।

इस फोटो में हमे एक मस्जिद देखने के लिए मिल रही हैं--- ]

दोनों साइड मे बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए दिख रहे है और आगे बाकी बैकग्राउंड में भी काफी ज्यादा पेड़ हमको लगे हुए दिख रहे है घास काफी ज्यादा नजर आ रही है दोनो साइड मे हमें रोड काफी बड़ा है जिसमें हमे एक पर्सन दिख रहा--

स्विचिंग बोर्ड दिख रहा है ट्यूबलाइट स्विचिंग बोर्ड ट्यूबलाइट दिख रही हैं दो पर्चे नजर आ रहे हैं देवाल पे ----

इस बिल्डिंग में हमे एक फोटो मे हमे एक बिल्डिंग देखने को मिल रही हैं जो कि बहुत सुंदर दिख रही हैं डिजाइन बहुत अच्छी दिख रही हैं।